बिल्डिंग नुमा संरचना दिख रही है जो स्पोर्ट्स की तरफ रास्ता लेकर जाता है।

हाय जु बाई भले पधार जू लिखा हुआ हिंदी में दिख रहा है इसकी छत घास से बनी हुई है।

इसके सामने ढेर सारी मछलियां भरी हुई पड़ी दिख रही है।

यह एक घर का फोटो है जिसके अंदर सोफे रखे हुए हैं।

यह एक खाली होटल नुमा संरचना दिख रही है जिसके सामने खुला द्वार तथा एक काउंटर दिख रहा है जिसके पीछे बड़ी स्क्रीन है।

जिनके सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग साफ साफ दिख रही है।

अंदर पी_वी_सी पाइप नल कनेक्शन कलर की डिबिया एवं आदि सामग्री हमें दिख रही है।

इनके पास में एक काले रंग का स्टूल पड़ा हुआ है जिस पर एक व्यक्ति के पैर दिख रहे हैं।

इस के अंदर बहुत सी मशीनें रखी हुई दिक रही हैं।

इसमें एक पेटी दिख रही है जो दो तालों से बंद दिख रही है।

यह एक खाली ट्रक पार्क की फोटो है जिसके हमें अन्दर हमें बहुत से पेड़ पौधे तथा बिल्डिंग नुमा संरचना दिख रही है।

यह एक होटल की फोटो है जिसके अंदर एक परिवार खन्ना खा रहे हैं।

यह एक बीजी रोड की फोटो है जिसमें हमें गाड़ियां जाती हुई दिख रही है।